यह एक मिश्रा लाज है इस मिश्रा लज का जो रिसेप एरिया है और सामने दिखाई दे रहा है जिसका मेन डोर ऊपर है साईड मे एक और डोर दिखाई दे रहा है जहासे एंट्री ली जा सकती है।

तो मैं भी तालाब देखा जा सकता है उसके साइड में पीले कलर की बिल्डिंग है जहां की साइड में हरियाली स्टील की ग्रिल लगी हुई।